यह एक बहुत बड़ी अदालत है मस्जिद है जहा पर एक महिला खड़ी हुई है।

और एक कार का पहिया बाहर निकला हुआ है और एक शीशा निकला हुआ है और मड गार्ड निकला हुआ है गाड़ी का और एक व्यक्ति --

--और उसका मड गार्ड खींचा हुआ है और नीचे दो पहिये धरे दिखाई दे रहे एक सामने एक और कार दिखाई दे रही--

और एक थैला टंगा दिखाई दे रहा है और यह एक दूकान है जहां पर कुछ कार्टून रखे हुए है।